चारों ओर गोल आकर की बाउंड्री दिखाई दे रही है।

इसके पीछे बहुत सारे कपड़े धरे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कार्यालय है जिसका नाम कार्यालय अधिशाली अभियंता झांसी डिविजन जल संस्थान ललितपुर उत्तर प्रदेश है जिस--

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें बंधन बैंक का बोर्ड लगा हुआ है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो बहोत सुंदर लग रही है इसमें गेट लगा हुआ--

एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे आइटम धरे हुए हैं।

एक व्यक्ति मशीन के पास खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

महाराष्ट्र पर्यटन राजधानी औरंगाबाद मध्ये आपले सहर्ष स्वागत का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

काली रोड डांबर की बनी हुई दिखाई दे रही है जिनकी दोनों तरफ पट्टी सफेद कलर की पट्टी दिखाई दे रही है।

कुछ चलते हुए वाहन दिखाई दे रहे है व एक बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।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

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो जगमग जगमग हो रही है।

आइडिया का पीछे बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है एक बैग --

एक बिल्डिंग दिख रही है जिसके ऊपर टीन धरी हुई है उसके ऊपर टंकी धरी हुई है।

बहुत सारे हरे भुट्टे दिखाई दे रहे जिसके हरे पत्ते दिखाई दे रहे।

बहोत प्रकार के आइटम दुकान में खड़ टंगे हुए दिखाई दे रहें एक बिजली का--

स्टार फाइबर ग्लास वर्क्स की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारे हर प्रकार के सीटे उपलब्ध कराई जाती है।

उसके बगल में एक बॉक्स खड़ा हुआ जिसके अंदर एक क्रीम धरी हुई दिखाई दे रही।

दी दीवाल से चिपका हुआ गेट खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दीवाल--

बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रहीं जिसमें बहोत सारी खिड़की दिखाई दे रही।

लकड़ी की एक सेट बनी हुई है जिसमें खंड बाई खंड बने हुए हैं जिसमें सामान भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें आने जाने के लिए पत्थर का रास्ता बना हुआ--

एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है जो शाम चार बजे से रात आठ बजे तक खुला रहता है और रविवार दोपहर बारहा बजे से पाच बजे तक खुला रहता है।

इसका पता कुशवाहा मार्केट पिसनारी तिराहा राजघाट रोड ललितपुर है।